फोर जी का पोस्टर चिपका हुआ भी नजर आ रहा है।

और दुकान के एंटर करते ही मुझे एक लैपटॉप भी --

जहाँ पर मुझे एक रास्ते में खड्डा भी दिखाई दे रहा हैं।

जिसके ऊपर एक रेड कलर का पोस्ट पोस्टर चिपका है जिसका नाम है सिटी --

हॉस्पिटल यहाँ पर मुझे एंटर करते हुए बहुत सारे गमले में पेड़ --

यहाँ पर इस पेन्डेल को बहुत सारे लाइटिंगो से सजाया --

जहां पर बहौत सारे डिस्को-लाइट लगाए गए हैं और इस --

और मुझे यहाँ पर ब्रेक डांस भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारे आदमी मेले देखते हुए-

तालाब देखने को मिल रहा है और यह ग्राउंड में मुझे बहुत सारे भैंसे चरती हुई --

ऊपर में तार के साइड में बहुत सारी डिस्को लाइटे भी लगाई गई है।

और एक बच्ची मुझे आर्ट पेपर काटते हुए नजर आ रही है।

और एक लड़का इन्हैं सीखता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो इनके लोगों को ड्राइंग सीखा रहा --

जो कि अलग-अलग बर्तनों पर यहाँ पर मुझे कचौड़ी की सब्जी देखने को मिल रही है।

अनार ये सब मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके साइड में मुझे पत्तों से डेकोरेशन --